क्लासरूम में रिबिन की सजावट की गई है बगल में बहौत सारी खिड़कियां भी हैं।

वहाँ पर चार लड़के बैठे हुए हैं जो डॉक्टर है। जिनने व्हाइट कलर का कोट पहना है।